रखे हुए हैं और फूलों का रंग पीला है फूल के नीचे का रंग --

एक सफेद रंग की टेबल भी रखी हुई है सोफो के ऊपर पीले रंग की --

बाहर एक बड़ा सा गोलाकार का पुल बना हुआ है।

यहां पर एक पीले रंग की इमारत बनी हुई है।

यहां एक इमारत बनी हुई है इमारत का रंग पीला --

मंदिर के सामने एक नारंगी रंग की छतरी बनी --

रखी हुई है इसके पास मे सूखी हुई लकड़ियां भी --

वहीं पर कुछ लड़कियां और लड़के व्यायाम कर रहे हैं।